सोने से बने हुए महंगे और आभूषण भे बेचे जाते हैं।

वारंटी गारंटी इसके इंजन व सभी पार्ट्स को भी बदला जा सकता है।

एक दुकान की है जिसमें की अधिकतर कपड़े से बने हुए--

एक लाल शर्ट का लड़का जिसने टोपी लगाया है वह फोटो भी खींचा रहा--

फूलों की सजावट की हैं जो कि एकदम लाइट कलर में है।

यह इस चीज को प्रदर्शित करता है पानी का इलाका है।

लगातार बह रहीं है जो छींटे मारते हुए एक झील का आकार ले रहीं है।

यह एक टेहलने की जगह है जिसमें लोग खुशी का एहसास करते है।

पुल साइड एरिया है जहां पार्टी की तैयारी--

इन्हें और भी अच्छा दिखा रहे हैं।

व्यवसायिक में इसमें बहुत ही ज्यादा लाभ--

सी_के प्लस की है जिसके स्पॉन्सर हिंदुस्तान--

जोकि अभी नया नया बना हुआ--

ऐसा इलाका है जहां के जमीन को किसी चीज की खेती के लिए साफ किया गया--

ऐसी जगह जाने की है जो संग्रहालय के--

यह तस्वीर नाई के दुकान की है।

यह तस्वीर जिसमें कि मछलियां दिखाई दे रही हैं यह आठ मछलियां--